ए यह पिक किसी शॉप की है जिसमें एक क्रोकोडाइल है।

यह पिक खुले आसमान की है जिसमें शाम हो रही है कुछ पेड़ पौधे दिखाई दे रही किसी सिटी की है और डूबता सूरज नज़र आ रहा है। ये--

ये पिक एक डाक घर की है जिसमें एक पोस्टमैन नजर आ रहा है एक लड़का नजर आ रहा है एक येल्लो कलर की कपड़ा पहना हुआ लड़का नजर आ रहा है दो औरते नजर आ रही है जो सारी पहनें हुए हैं।

का डेकोरेशन फ्लावर से भी किया गया है कुछ पर्दे लगाए गए हैं रेड येलो पर्पल कलर के भी हैं।